और इस मंदिर के इर्द-गिर्द में ढेर सारे--

और एक व्यक्ति गाड़ियों की ओर--

हवेली का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और यह रोड जो है टर्निंग पॉइंट पर--

और यहां ऑफिस में ढेर सारे चेयर और टेबल लगाए हुए हैं कुछ व्यक्ति बैठकर डिस्कशन भी कर रहे हैं।

लंबा और चौड़ा दिखाई दे रहा है इस दुकान में काफी सारे सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

लेनदेन करते हुए दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर दो बस लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक ऑफिस का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां ऑफिस के बाहर वाले हिस्से पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है--

यह एक स्विमिंग पूल का दृश्य दिखाई दे रहा है जिस स्विमिंग पूल के अंदर में--

जहां दुकान के अंदर देखने से पता चल रहा है कि--

फ्रिज करने का कार्यक्रम होता रहता है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को--

और यहां पर पान मसाला भी भिकता हुआ दिखाई दे रहा है।

जहां की दीवालों पर लिखा हुआ है बाबा की बिरयानी।

ढेर सारे व्यक्ति एकत्रित हुए हैं होटल के अंदर ।

एक दृश्य दिखाई दे रहा है जहां काउंटर पर व्यक्ति किसी पोस्ट के लेकर डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कॉपी पेन पेंसिल सभी सामान यहां पर रखे हुए हैं सभी स्टेशनरी के सामान यहां पर हैं।

जहां पर डेरी प्रोडक्ट बिकता हुआ भी दिखाई दे रहा है जिसमें दूध के थैले दिखाई दे रहे हैं और दूध से बनी हुई--